बिल्डिंग है पीछे और सामने स्टेज में बड़ी सी सोफा रखी गई है।

और पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रही है।

और एक गाड़ी एक्टिवा दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे गमले भी दिखाई दे रहे हैं घर के पीछे बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ पूरे बड़े बड़े पेड़ और बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

और नदी का रंग पूरा हल्का ग्रीन है चारों तरफ बड़े-बड़े चट्टान है और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

जिसमें बहुत सारी टेबल चेयर लगी हुई है।

नीचे ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा कपड़े का दुकान है जिसमें--

टायर लगे हुए हैं नीचे में--

और गमलों में पूरे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

आईडिया का शोरूम है जिसमें पूरे टेबलों में कंप्यूटर रखे गए हैं और छोटे बड़े बलून लगे हुए हैं।

और तेल शैंपू सारी चीज दिखाई दे रही है।

ये चित्र में एक बहोत बड़ा सा--

दूल्हा दुल्हेन और बहुत सारे सजे लोग यहाँ पे खड़े होके डांस कर रहें हैं।

और बहोत सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है पटाखे की झालर जैसे रोशनी किए जा रहे है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है।

अह हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है।

और चूड़ियां कुछ ले रहे कस्टमर लोग।

इस चित्र में बहुत बड़ा सा रुम है जिसमें अह कुछ लोग खड़े हुए है और बैठ के सिलाई कर रहे है।

और मिठाई भी रखी गई है फ्रिज की--